और एक डस्टबिन भी हरे कलर का दिखाई दे रहा है।

और ब्लू रंग का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

वो अपनी सेल्फी लेता नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

और एक एरो का निशान भी दिखाई दे रहा है।